किराना का दुकान है किराने के दुकान में बहोत सारे लाइन में लग कर के कुछ सारे व्यक्ति सामान खरीदते हुये नजर आ रहे हैं एक व्यक्ति समान लेके जाते हुये भी नजर आ रहे हैं।

एक होटल है होटल के आगे दो व्यक्ति खड़े हैं खाना खाने जाने के लिए और एक दो बाइक लगे हुए हैं एक डस्टबिन भी नजर आ रहा है।

पड़ते हुए नजर आ रहे हैं भेवरेटर घुसाते हुए भी नजर आ रहें हैं फर फोड़ा लेकर गी भी खड़ा है।

एक भंडारा चल रहा है इसमे कुछ सारे ले-लेडिज बेंगन काटती हुई नजर आ रहे हैं एक कारीगर खाना बना रहें हैं।

ये एक यह एक नया जिम है इस नया जिम में कुछ सारे बैलून लगे हुए है कुछ सारे व्यक्ति नीचे बेठे हुए है और एक लड़की बैग टांग के बैठी हुई है।

ये एक बस स्टैंड है। बस स्टैंड में कुछ सारे यात्री बस पकड़ने के लिए आए हुये हैं । एक बुढे आदमी बस पे चढते हुए नजर आ रहे हैं। थेले --

झोले के साथ एक व्यक्ति आते हुऐ उधर से नजर आ रहे है एक व्यक्ति मोबाइल चलाते हुये भी आ रहे है ।